ऊपर में पूरा खुला आसमान है। पीछे बहुत सारा घर है। जो की ग्रीन कलर का है। और व्हाइट कलर का बॉर्डर है।

की यहाँ पे किराना स्टोर है। जिसमे बोहोत सारे सामान रखे हुए है। स्टर है। जो की ब्लू कलर का है।

कुछ बल्ब जल रहा है वाइट कलर में होल्डर है वाइट कलर का एक स्लीपर है ब्लैक कलर का झोला है काउंटर टेबल है जो की ब्लैक कलर का है फैन --

यहां पर एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। फील्ड में कुछ पत्थर लगे हुए हैं। स्टील का रेकर लगा है। बहुत सारे घर हैं।

यहां पे एक कैफे हैं इसमें बहोत सारे आदमी आए हुए हैं कुछ एक आदमी लूंगी में है और व्हाइट कलर के शर्ट में है और अप बाल जरा हुआ हैं ऊपर ये बहोत सारे बिजली के तार हैं।

कलर में भी हैं पीछे बड़ा बिल्डिंग हैं कुछ बड़े बड़े ट्री हैं फूल है ट्री में जो कि येलो कलर का हैं नीचे गिट्टी पत्थर रखा हुआ हैं। एलविस्टर हैं स्टील का ऊपर नीला आसमान--

और नीला कलर का है एक गोदरेज है जो की ब्राउन कलर का हैं गेट हैं।

कुछ टी-शर्ट है जो की रेड कलर मे है ब्लू कलर मे है ऊपर में एक कार्टून रखा हुआ एक फैन है जॉकी का एक चड्डी है।